उसमें बहोत सारी लाइटें लगी हुई हैं कुछ लोगों के हाथों में फोन है।

यहा पे एक बडा सा ग्राउंड है। वहाँ पे बहुत सारे ट्रक खड़े हुए है एक जे.सि.बी. है। जे.सि.बी. --

नीचे गढ्ढा कर रही है आसपास चबूतरे बने हुए है उनपे बहुत सारी लोहे के सरिये गड़े हुए है नीचे कुछ पानी बना हुआ है।

यहा पे एक बडा-सा मैदान है यहा पे गाड़िया खड़ी हुईं हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं।

एक ऑटो खड़ा हुआ है। दो बड़े- बड़े खंबे लगे हुए है। छोटे- छोटे बेरीकेटर रखे हुए है आसपास |

जाली लगी हुई हैं गैलरी है।

बड़ा-सा मकान है आगे खेत है खेत के पीछे बहुत सारे मकान है पेड़ लगे हुए है खेत मे छोटी-छोटी।

यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग है बिल्डिंग के आगे एक पेड़ लगा हुआ है।

ऊपर बड़े बड़े बूके लगे हुए हैं फुल लगे हुए हैं मालाएं लगी हुई है ।

बहुत सारे सीधे लगे हुए हैं एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है।

यहा पे कुछ बिल्डिंगे बनी हुई है। उनपे तार की जालिया लगी हुई है। बड़े- बड़े बोर्ड लगे हुए है पोस्टर लगे हुए है।

बाउंड्री बनी हुई है खम्भों पे लाइटें लगी हुई हैं कन बाउंड्री के पीछे कुछ पेड़ --

बिल्डिंग में लाइटे जल रही है जालियां लगी हुई है ऊपर खिड़कियां हैं।

बड़े बड़े खंबे लगे हुए हैं | टावर लगे हुए हैं | आस-पास पेड़ है ।

यहाँ पे एक दुकान है। उसमे टेबल रखी हुई हैं। कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं। बड़े-बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं।

उसके उपर एक गोल घुमट बनी हुई है। उसमे रंग बिरंगे फुल लगे हुए हैं। नीचे नीला कारपेट बिछा हुआ है। दीवाल पे कुछ बुके लगे हुए हैं।

यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनी हुई है | कुछ पिलर भरे हुए हैं | उनमे से बड़े बड़े तार निकल रहे हैं ।

एक पोस्टर लगा हुआ है नीचे एक ब्रेंच रखी हुई है एक कुर्सी है उसपे बैग रखा हुआ है।

यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग ल बनी हुई है | बिल्डिंग पे बहुत सारे कांच लगे हुए हैं नीचे शटर लगी हुई है ।

यहाँ पे आसपास बहुत सारे मकान बने हुए हैं। कुछ मकान बन रहे हैं आगे रोड है।